ये एक किनारा स्टो इस स्टोर है यहां पे बहुत सारा राशन का सामान रखा हुआ है।

ये शॉप में नीचे कुछ बोरे पानी की बोतल भी रखी--

सामने वाले सेल्फ में शेजवान चटनी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑइल फैस वॉश सामने डायपर सब रखा हुआ है।

ये एक मैदान है जहां पे बहुत सारे लड़के खड़े हुए है।

यहाँ एक लेडिज और एक जेन्ट्स बैठे हुए हैं नीचे --

इसपे डमी पे बोहत सारे कपड़ों बड़ों के बच्चों के लेडिज के जैंट्स के इधर हर तरीकों के कपड़े नजर अर हे--

यह एक नी-नीचे गेट लगा हुआ है एक गमला रखा हुआ है और ग कांच का पूरा डोर बना हुआ है।

--और यहाँ कुछ दुकाने भी है और जीनो से दो लड़-बच्चियाँ ऊपर चढ़ रही है।